मे एक पन्नी दिखाई पड़ रही है जो की व्हाइट रंग की है और इसमे बहोत सारी झींगा मछली रखी हुई दिखाई पड़ रही है यहां पे ये इसका कलर व्हाइट कलर सिल्वर कलर और ग्रे कलर हल्का उम्म ब्राउन और ग्रीन कल्लर मे भी दिखाई पड़ रहा है ओ --

और दीवाले पिंक कलर की दिख रही है यहां पे एक खिड़की लगी हुई दिखाई पड़ रही पीछे बड़ा सा एक शीसा लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है ऊपर कुछ टाट जैसा बना हुआ है।

पीछे साइड बहुत सारी मशीनें रखी हुई है जो कि ग्रे कलर मे दिखाई पड़ रही है यहां पे फर्श भी ब्राउन कलर की दिख रही है और बगल मे कार्पेट बिछा हुआ है जो कि ग्रीन कलर मे दिखाई पड़ रहा है।

जो की ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे एक आइस क्रीम वाला खड़ा हुआ दिख रहा है सामने एक ठेला वाला खड़ा है और वह कुछ बेच रहा है सामने कुछ अ लेडीज़ खड़ी हुई है साइड में कुछ बॉयज भी खड़े हुए दिखाई पड़ रहे है नीचे जमीन ब्राउन कलर की दिख रही है।

एक शॉप जैसा दिख रहा है यहां पे ऊपर रेड और व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है यहां पे सामने कांच का दरवाजा दिखाई पड़ रहा है इसके सामने कुछ बाइक और स्कूटर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे है एक ऑटो रिक्शा भी दिखाई पड़ रहा है।

ऊपर छत पे कुछ फ्लावर जैसा टंगा हुआ है जोकी ऑरेंज कलर में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे छत व्हाइट कलर की दिखाई पड़ रही है साइड में दो पिलर दिख रहें हैं जो की ब्लैक रंग में दिखाई पड़ रहें हैं यहाँ पे काफी लोग जीने पे खड़े हुए दिखाई पड़ रहें हैं।

दिखाई पड़ रहा है स्टेज पर एक कुर्सी रखी हुई है कुछ लोग स्टेज पर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे नीचे बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई कुर्सी पर व्हाइट कलर कपड़े बिछे हुए दिखाई पर रहे हैं यहाँ पे सामने कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं या --

एक मंडप जैसा बना हुआ है यहाँ पे साइड में पिलर बने हुए हैं वहाँ पर कुछ पर्दे भी लगे ऊपर फूलों से डेकोरेट किया गया है यहाँ जमीन ग्रीन कलर की दिखाई पड़ रही है।